हिरण बोहोत ही फुर्तीला जानवर होता है।

डेकोरेशन का सामन है मार्केट में आसानी से उपलब्ध रहती हैं चीज़ेकस्टमर मार्केट से ये खरीदता है।

डॉक्टर भी सुबह-सुबह व्यायाम करने का मशवरा देते --

मस्जिद खुदा की इबादत के लिए एक पवित्र स्थान होता है ।

हलवाई की दुकान में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं वहाँ से लोग अनेक- अनेक प्रकार की मिठाइयाँ लाते हैं।